की दो लोग बैठ आपस में बात चित करते दिख रहे है।

का यह दुकान दिख रहा है यहां पड़ बहुत साड़ा मोटरसाइकलस और सीटस हमें--

इस फोटो में हमें एक बच्चा है जो की बहोत ही छोटा है फिर भी पैरो की टहनियों पर--

और शायद साईकल या मोटरसाइकल लगी हुई भी नजर आ रही है।

कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं काफी ज्यादा ईंटें--

सटर पे परफैक्ट लिखा हुआ दिख रहा है यहां पे एक कुलर भी इस अंदर के गोडाउन में लगा हुआ है।

इस फोटो में एक व्यक्ति है जोकि--

बोहोत ही बड़े बड़े इस शहर के ऊंचे ऊंचे--

ऐसी परेड हो रही है जहां पे बहोत सारे यहां अं कोई अं--